यहा पे जेसीबी मशीन है जो गड्डा खोद रही है खेत मे और तीन आदमी खड़े है।

धूप पया नीचे गिरि हुई है कुछ स्टूल बिखरे हुए है।

कुछ व्हाइट कलर का सॅडो दिख रहा है और पूरा पौधों से भरा हुआ हरभरा दिख रहा है।

पीले या रेड कलर के बलून है कुछ गोल्डन कलर का बैकग्राउंड है लैपटॉप रखे हुए--

एयरटेल कंपनी का ऑफिस है सामने दो लड़के खड़े है अंदर से बाहर से कुछ काच लगा हुआ है उपर मे एयरटेल का बोर्ड है उस पर एयरटेल नाम लिखा हुआ है।

यहा पे फोर व्हीलर का गैरेज है एक फोर व्हीलर रिपेरीग चालू है उसका बोनेट खोला हुआ है उसका टायर निकाला खुला हुआ है।